की तरफ एक झूला नजर आ रहा है जिसके ऊपर ोक्तिपुस बना हुआ है इसका रंग कुछ गुलाबी रंग का है इसके निचे की तरफ--

एक बड़ा सा सांची का स्तूप बना हुआ है अ जिसका रंग कुछ काला और ग्रे रंग का नजर आ